और उसी में डेक्से में सामान रखा हुआ नजर आ रहा--

और बच्चे छोटे छोटे हैं और ऊं खेत भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर खंबे दिखाई दे रहे हैं और खंबे के ऊपर--

और टाइल्स भी दिखाई दे रहे हैं देखने में लग रहे हैं जैसे कि पुराने--